एक स्कूटी और एक मोटरसाइकल रखी हुई है और निचे छतररिया भी रखी है यहाँ पर एक महिला मास्क लगा कर जा रही है जोकि पिंक कलर साड़ी पहनी हुए है और यहाँ पर एक रोड भी है।

यह एक दीपिका इंटरनेशनल है नीचे कुछ कृष्णा टेंडर्स कंपनियां भी बनी हुई है और यहाँ पर कई सारी बाइकें सटरे और भी --

दो लाइटों के खम्बे गड़े हुए बहुत ही बड़े बड़े टावर जैसे लग रहे है और यहाँ पर कुछ हवेलियां घर बने हुए है नेट का बे बना है एक टपरी है।

यह एक हाउस है जो की पक्का है इसकी छांव बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कुछ रस्सियाँ लटक रही नीचे कुछ शटर भी लगी हुई है यहां पर लोहे की रेलिंग बनी हुई है।

हाउस है जिसके सामने कुछ काँच है जो कि फूट गया है और ऊपर भी कुछ काँच की खिड़किया और एक गेट लगा हुआ है।

एक व्हाइट कलर की कार खड़ी हुई हैं कुछ लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं दोनों साइड से सीढ़िया दी हुई हैं लोहे की लाइनें भी बनी हुई हैं।

भी लगे हुए हैं और एक स्मार्ट लिखा हुआ है एक लोहै का गेट रखा हुआ है जो की रोड बंद करने के लिए काम आता है और एक व्हाइट कलर की कार भी यहां आ रही है।

ब्लेक कलर की एक गईया है जो उसको सफ़ेद कलर का निशान लगा हुआ है एक मोरी भी बांधे इसके टेडे सिहोर है बड़े बड़े है यहां पर पुरुष एक महिला खड़ी हुई है जो देख रही है।

और इसमें लोहे की रेलिंग लगी हुई है और सामने हरी-हरी दुबा भी लगी है उसमें रेड कलर का एक ए_टी_एम बना हुआ है और कुछ--